सामने एक गार्ड बना हुआ है जिसकी खिड़की में वाइट कलर के पर्दे डले हुए हैं।

व्हाइट कलर की गाड़ी के साइड में एक लड़का पीले कलर की टी शर्ट पहन कर खड़ा है।

ये फोटो किसी होटल का फोटो है जिसमें बोहोत सारी पब्लिक खड़ी हुई है।

बाहर हरा भरा एक बहोत अच्छा गार्डन बना हुआ है।